और ऊपर की तरफ पेड़ पौधे दिखाई पड़ रहे हैं पीछे की तरफ एक छत दिखाई पड़ रही है।

लैपटॉप दिखाइ पड़ रहा है दीवाल पे बोर्ड लगा हुआ है सर्टिफिकेट लगा हुआ है।

हरी भरी घास लगी हुई है काफी बड़े बड़े पेड़ पौधे दिखाई पड़ रहे हैं।

काफी बड़ा ब्रिज बना हुआ है जिसके ऊपर से पानी गिरता हुआ दिखाई पड़ रहा है।

और बहोत सारी दुकाने दिखाई पड़ रही हैं बड़े बड़े पेड़ पौधे दिखाई पड़ रहे हैं।

आस पास खंबे कुछ दिखाई पड़ रहे वायर दिखाई पड़ रहे बड़े बड़े पेड़ पौधे दिखाई पड़ रहे हैं।

और बहोत सारे पेड़ पौधे छोटे छोटे दिखाई पड़ रहे काफी दूरी में बाउंड्री खींची हुई है।